यहाँ पर नाव में दो तीन चार पाँच आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ से अच्छा पर्वत दिखाई दे रहा है यहाँ से कुछ बादल दिखाई दे रहे यहाँ पर एक टापू बना हुआ है जहाँ पर कुछ--

बहुत अच्छी तरह से कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जहाँ पर अच्छी अच्छी हरियाली दिखाई दे रही हैंजहाँ पर देखा जाए कुछ अच्छी तरह से कारे रखी हुई दिखाई दे रही हैं जहाँ पर अच्छे तार दिखाई दे रहे--

बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है जहां पे लिखा है महात्मा गांधी स्टेडियम --

मंदिर के यहाँ यहाँ पर बहुत अच्छा मैदान दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ अच्छी लाइटे बनी गई है जहाँ पर देखा जाय तो मंदिर को अच्छी तरह से सजाया गया है जहाँ पर अच्छी मूर्तियां बनाई गई है।

और बहुत अच्छा मंदिर दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा है ओम नम :शिवाय --

दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ कंकर पत्थर भी दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ वृक्ष भी लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ मैदान दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ बादल दिखाई दे रहे है बादलों का कलर --

यहाँ पर कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ भूमि भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर देखा जाये तो अच्छी तरह से रेता भी दिख रही है अच्छी-अच्छी मस्त म--